और बहार स्ट्रीट टाइप का है और खम्बा वम्बा लगे हुए है और एक आदमी बैठा हुआ है।

इसे पिकचर में दो आदमी बैठे हुआ है एक डाइनिंग टेबिल है एक रेफ्रिजरेटर है।

जीसे हम फ्रिज भी कहते हैं एक फायर एक्सटेंगुशर लगा हुआ है ऊपर पंखा चल रहा है बल्ब जल रहा है आदमी स्टाइल मार रहा है नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

उचेर रंग का पूरा सब कुछ है और एक पंखा है और एक बल्ब ल--

इस फोटो में पूरा हरा हरा सा कुछ दिख रहा है एक लाईट वाला टेडीलेम्प दिख रहा है और--

कलर कर दिया गया है एक फुटपाथ है और बगल में नदी है और पीछे में कुछ मूर्ती टाइप का दिख रहा है हरा हरा पेड़ सब पूरा दिख रहा है और आसमान में एकरम बदल दिख रहे है।

एक आ लडकी वडकी बेठ के सब अपना काम कर रही है और एक--

इस चित्र में दिख रहा है कि एक ब्राउन कलर का वो है मेच टाइप का है और यहाँ पे--

पंखा चल रहा है धुप रौशनी आ रहा है मेज है सोफा है यही है इस चित्र में--